एक पुरुस हल्का सा नजर आ रे हैं उसके हम आगे बढ़ते हैं तो एक फ्लैट जो है पीले टाइप का देखाई दे रहा है बीच में किसी का चलने का भी देखाई दे रहा है।

गेट है जो दिखाई नहीं दे रहे हैं ऊपर में लाइट बत्ती जल रही है जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे--

मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि यहां पर सोफा ब्लू टाइप का लगा हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे जो हैं अहम्म हवाई एयरलाइंस का कुछ--

इस इस ये तस्वीर में मुझे स्पष्ट रुप से--